बिल्डिंग का रंग पीला है कांच की खिड़कियां लगी हुई है ऐ_सी भी लगी हुई है।

यहां एक फोन दिखाई दे रहा है जहां पर एक यूनियन बैंक का बोर्ड भी लगा हुआ है।

घड़ी रखी है लाइटें लगी हुई है एक कुर्सी भी रखी हुई है टाइल्स वगैरा भी अच्छे से लगे हुए हैं।

यहां पर दो मंजिल का मंदिर दिखाई दे रहा है।

बोहोत सारी कांच की शीशियाँ भी रखी हुई हैं लाइट की डोरियां भी इ डली हुई हैं यहां पे।

छावन रखा हुआ है एक खम्भा लगा हुआ है बोहोत सारे कपड़े डले हुए --

मंदिर का रंग सफेद पीला है कुछ मंदिर पत्थर के बनी हुई हैं।

यहां बहोत सारे फूल रखे हुए है जिनका रंग सफेद पिला गुलाबी लाल बहोत सारे रंग है।

वहीं तीन मूर्तियां भी खड़ी हैं कमल के ऊपर एक बड़ी मूर्ति है दो छोटी छोटी मूर्तियां हैं।

मंदिर के अंदर एक छोटी सी प्रतिमा माता रानी की रखी हुई है यहां पर दो शेर भी हैं पास में।